ये बहुत ही यहां पर बहुत ही अच्छी बहुत ही सुन्दर डेकोरेशन हो रही है और यह है और यह से सजाई गई है और यहां पर लाइटे भी लगी हुई है।